और बहुत सारे पेड़ भी दिखाई दे रहे है।

हमें इस फोटो में एक जे_बी_सी दिखाई दे रही है।

यह एक रेस्टोरेंट का फोटो है जहां पर काफी सारे व्यक्ति बैठे हुए हैं और साथ में ही यहां पर एक ऊपर की ओर पंख लगा हुआ है।

साथ में ही दो तकीये भी रखे हुए हैं।

और यहां पर एक कैमरा और मीटर भी लगा हुआ है।

और यहां पर दो कुर्सियां भी रखी हुई है।

और साथ में ही यहां पर काफी सारी ग्रिल भी लगी हुई है।

और साथ में ही यहां पर काफी सारे व्यक्ति भी खड़े हुए हैं और इस शॉप के पास एक पत्तो भी लगे हुए --

और साथ में ही नीचे की ओर फरश पर सफेद कलर का पत्थर बिछा हुआ है।

और इसकी दीवारें सफेद कलर से लगी हुई है।

और साथ में ही यहां पर एक व्यक्ति भी खड़ा हुआ है।

और गुब्बारे भी लगे हुए हैं और कभी सारे व्यक्ति बैठे हुए हैं और डी_जे भी लगे--